मे हमे एक मिस्त्री काम करता हुआ --

आप देख सकते हैं काफी पौधे बड़े छोटे सभी तरह के हैं।

यह एक कांच का बना हुआ हॉस्पिटल है जहां पर काफी मरीज आते हैं।

इस इमेज में आप एक सरकारी बिल्डिंग देख रहे हैं।

पास में पानी की बोटल बीस रुपए वाली रखी हुई है।

एम_बी_ए एम_सी_ए कॉलेज है ये जयपुर में स्थित है।

इस फोटो में आप तीन बाइक्स देख सकते हैं स्प्लेंडर प्लस दो --

इस फोटो में आप दो दुकान देख सकते हैं।

यहां पांच छह प्लेटें रखी हुई है।

फोटो में आप सामुदायिक भवन मरुधर मातुड़ समाज की बिल्डिंग देख सकते हैं।

इस फोटो मे आप हिल्टन कंपनी की बिल्डिंग देख रहे है।

यहां पर शादी वगैरह इनका प्रोग्राम होता है।

इस फोटो में आप गांधी जी की मूर्ति देख सकते हैं जहां पर काफी गाड़ियां आ रही हैं।

यह हम खरीद सकते हैं अपने घर में सजावट के लिए लगा सकते हैं।